घास है जमीन है फिर इतने ज्यादा दरक्त लगे हुए हैं सामने सामने जगह पर घर बना हुआ है।

फ्रिज पड़ी हुई है मशीन पड़ी हुई है और लाइटें जल रही है।

औरत कर आ रही है और ऊपर से लड़के आ रहे हैं।

एक दफ्तर है दफ्तर पे कुर्सियां पड़ी हुई है टेबल पड़े हुए हैं।

एक खुली जगह है लड़के आ रहे है लड़कियाँ जा रही है एक गाड़ी खड़ी हुई है लड़के ने पिंक कॉलर का शर्ट पहनी हुई है सामने दीवार पर ग्रीन अ --

ग्रीन कलर हुआ है दरख्त ही दरख्त है हर जगह दरख्त ही दरख्त है और और उस साइड भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

एक दुकान है जिसमें बुक किताबें ही किताबें है कागज ही कागज है पेंसिलें है रेज है शॉप है।

बिस्किट वगेना है चाय की पत्ती है सारा कुछ है पेस्ट वगैरह है ई सारा कुछ है इसके-इसके पास लेस वगैरह भी --

ये सोफा पड़ा हुआ है साथ ही फूल ही फूल लगे हुए हैं दरख्त ही दरख्त है।

और और वो दुकान चीज वाली दुकान है साथ ही सामने दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है दरख्त ही दरख्त है और गमले पड़े हुए हैं।